इनको पूजा की जाती है सुबह और शाम को दोनों टाइम पहले दिन शाम होता है दूसरे दिन सुबह होता है बहोत देखना बहोत अच्छे अच्छे लोग हैं भीड़ है अच्छा खासा बहोत अच्छा लग रहा है--

घर के लिए नीव भी दिया गया है कोड़ा गया है मट्टी है आप देख सकते हैं बहोत सारे वहां लोग हैं खड़े--

यहां एक दीदी कपड़ा निकाल रही है और बहोत सारे कपड़े बिखरे हुए हैं।

देख सकते हैं यहां कोई बच्चा कुछ माइक में बोल रहा है मेरे हिसाब से ये इंडिपेंडेंस डे और --